ये एक अ माला की दुकान है हिंदुओं की वर मालाएँ मिलती है ना ये वही दुकान है।

यहाँ पे गजरे बनाए जाते हैं हाथ पैरों के फूल बनाए जाते हैं।

गावँ वाले भरे हुए हैं और आजु बाजू शायद मंदिर भी हैं तो ये लोग को हिंदुओं का कुछ होगा अस्तक फीरुल्लाह अल्लाह माफ कर जोकि अल्लाह हिफ़ाजत करे सब की।